कोई ले रहा है। तीसरा अ आदमी खड़ा होकर देख रहा है और चौथा कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। सब लोग खाने के अगल बगल खड़े हैं।

घास छोटे-छोटे पेड़ भी है और पहारों से पानी गिर रही है जो एक नदी में में बह रही है और देखने में ये बोहोत ही खुबसुरत लग रहा है चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है।

में यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है जहाँ पर बहुत तरीके के चित्र बने हुए हैं और उस दीवार के ऊपर सीलिंग पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है।